यहाँ एक स्टेज है जो की बहुत ही बड़ा है यहाँ पे लड़की डांस कर रही है लड़की ने लेहंगा पेहन रखा है और ब्लैक कलर का टॉप पेहन रखा है ऊपर--

कृपया प्रतीक्षा करें हिंदी भाषा का अनुवाद लोड हो रहा है|